और साइड में एक दुकान भी है और।

और ऊपर टीवी टीवी भी लगी है कैमेरस भी लगे हैं।

मारवाड़ी चिकन शॉप लिखा है और साइड में लकड़िया भी है और।

और नदी में कुछ जहाज हैं जहाज में बहोत लोग भी बैठे हैं और वो--

और पे पीछे पेड़ में भी बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेट हैं और ये।

ये एक लॉन है वहाँ लाइट्स है।

और घर में एक टेन रखी है।

वो जो लकड़ी जैसा है लकड़ी से बना हुआ है।

ये एक साड़ी की दुकान हैं वहां बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां भी हैं और सा।

नीचे भी पेड़ है और गाड़ियां भी रखी है साइड में एक बहोत बड़ा पेड़ है और--

क्या कपला भी रखा हुआ है पीछे भी--

ये एक आर ओ दुकान है और यहाँ बहुत सारे आर ओ हैं इस।

ब्राउन कलर के बस सोफ़ा है पीछे चेयर्स भी रखी हैं साइड मे ऑफिस है।

यहां एक बच्चा पेड़ों को पानी दे रहा है और वहां बहोत सारे फूल्स भी है।

केमिकल्स रखे हैं और एक बॉक्स भी है।

एक मिठाई की दुकान है मिठाई की दुकान में वहां बहुत सारी मिठाई रखी ऊपर डोनैट रखे है।